यहाँ पर एक रूम हैगा जिसमें ग्रीन कलर का पेंट किया गया हैं और रूम के अंदर कुछ शटर लगे हुए हैं अलग-अलग दिवाले अलग-अलग शटर हैंगै दुकाने बनी हुई हैं।

साइड में कुछ चेयर रखी हुई हैंगी यह चेयर कथई कलर की हैगी और दिवाल में एक घड़ी टंगी हुई हैगी--

और जो पेट्रोल भरवा रहा हेगा और पेट्रोल पंप के आगे रोड का हाईवे हेगा एक अभी रात है इसलिए यहां लाइट जल रही हेगी।

यहाँ पर एक फूलो की दुकान हैं जहाँ पर बहुत सारे फूल रखे हुए हैं और यहाँ फूलों की मालाएँ भी रखी हुई हैं और एक उनका डोल डलिया है।

यहाँ पर जिसमें एक कमल का फूल रखा हुआ हैगा जो पिंक कलर का है और उसमें बहुत बहुत सारी कमल के फूलों की कालियाँ रखी हुई हैं जो अभी बंद है।